यह एक बस स्टैंड है और यह बस स्टैंड काफी बड़ा है।

लोग आते हैं इस बुक स्टोर में --

पूजा करते है और यहाँ पे पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे श्रद्धालु --

लोग यहाँ पे आते है सब्जी खरीदने फल खरीदने फूल खरीदने और सब्जी खरीदते है यहाँ पे फल खरीदते है फूल खरीद के उसे --

लोग बुक खरीदते है यहाँ पे बहोंत ही आसानी से लोग बुक खरीद सकते है यहाँ पे काफी--

लोग यहाँ पे घूमने काफी पसंद करते हैं और इस डैम में लोग मछलिया भी पकड़ते हैं और--